मेरी गाड़ी का तो यार खत्म हो गया यार पेट्रोल पम्प भी बोहोत दूर है यार पता नहीं कितनी दूर है चल यार थोड़ा सा धक्का लगा दे यार गाड़ी में यार जिससे कि पेट्रोल पंप पर पहुंच जाए पेट्रोल पंप पर जाके मैं तेल डलवा लूंगा यार हां यार थोड़ी एक दो किलोमीटर दूर है पेट्रोल --

और जंगल में एक बच्चा बैठा हुआ था बकरी का और एक माँ थी। वो इतना बढ़िया लगा रिहा था इसका फ़ोटो खींच के लाया भाई और उसके साथ भी फ़ोटो खींचे। पूरे जंगल में वो ही बच्चे बैठे थे दो एक बकरी थी और एक और था उसका बच्चा।

एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन कितना बढ़िया है यार बहुत बढ़िया स्टेशन है। नीचे सबमे टाइलें लग रही है और क्या कहते है उम्म बहुत बढ़िया है और बैठने की भी अच्छी सुविधा है उन्होंने और हर चीज़ की बढ़िया सुविधा है और अच्छा सा लगता है वहाँ बैठ के यार।

वहाँ चल यार आईडिया के केयर पे यार मुझे सिम लाना है आईडिया का मैनें सुना है आईडिया के नेटवर्क बहुत बढ़िया चल रहे है फोर जी सिम आया है जबसे बहुत बढ़िया स्पीड दे रहे है नेट वेट में कोई दिक्कत नहीं पड़ रही तो मैं भी यार आईडिया का सिम ला के देखूँ यार कैसा चलता है और उसमें रि --